एन्ड यहाँ पर बहुत सारी लाइट वगैरा लगी हुई हैं फ्लावर्स वगैरा लगे हुए हैं एन्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही --

देख सकते है आप लोग क्राफ्ट बना रहे हैं चार्ट पेपर वैगरह रखे हुए है सामने आपके टीचर भी नज़र आ रही है जो अपनी फोटो खींचा रही है एंड आपको पीछे भी कुछ लड़के नज़र आ रहे होंगे।

आपको यहां पे बहुत सारे बोट भी नजर आरी होंगी एंड आप देख सकते यहाँ पर तीन बोट है और सब में बहुत सारे लोग भरे हुए है।

यानी यहाँ पर आपको दो टीचर नज़र आ रही होंगी एंड दोनों टीचर ने साड़ी पहनी है एक ने रेड कलर की एंड एक ने येलो कलर के एंड आप देख सकते हैं सभी लोग जो हैं ड्राइंग बना रहा है एंड पीछे एक गमला भी रखा हुआ है।

जीन्स टॉप वगैरा पहना है एक टीचर के हाथ का व्यू भी दिख रहा होगा सभी के पास कुछ-कुछ सामान एक के पास कॉपी है एक के पास पेन --